मोजिल्ला फायरफॉक्स मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स के सर्च और ऑटो कम्प्लीट विशेषताओं पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे सर्च इस्तेमाल करें सर्च एंजिन को नियंत्रित करें फाइंड बार का इस्तेमाल करें एड्रेस बार में auto कंप्लीट का इस्तेमाल करें
इस ट्यूटोरियल में हम उबंटू 1004 पर फ़ायरफ़ॉक्स वर्ज़न 70 इस्तेमाल करेंगे
इन्टरनेट पर सबसे सामान्य कार्य लोग जो करते हैं वह है जानकारी खोजना
कोई विशिष्ट वेबसाइट के लिए या कोई अन्य जानकारी के लिए खोज कर सकता है
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स के पास अनेक क्रियात्मक्ताएँ होती हैं जोकि इसे इन्टरनेट पर जानकारी खोजने में सरल बनाता है
चलिए कुछ तरीकों पर नज़र डालते हैं
एक तरीका है कि अन्य वेबसाइट्स को देखकर खोजें
आखिरकार सर्च एंजिन भी वेबसाइट्स ही होती हैं
उर्ल बार में wwwgooglecom टाइप करें
गूगल होम पेज आता है
गूगल होम पेज के सर्च बॉक्स में इमेल टाइप करें और सर्च पर क्लिक करें
सर्च एंजिन सारे परिणामों को दिखाता है
हम देख सकते हैं कि सबसे उपर परिणाम जी मैल के लिए है इमेल फ्रॉम गूगल
किन्तु मोजिल्ला फायरफॉक्स के साथ इसे करने का एक सरल तरीका है
नैविगेशन टूलबार पर उर्ल बार के बगल में एक सर्चबार फील्ड है
इसके बदले में आप सर्चबार फील्ड पर सीधे जाने के लिए CTRLK प्रेस कर सकते हैं
सर्चबार पर क्लीक करें और इमेल टाइप करें
आवर्धक लेंस के आइकन पर क्लिक करें जो इसके बगल में है
हम खोज के परिणाम कंटेंट्स क्षेत्र में देखेंगे
हम देख सकते हैं कि सबसे उपर परिणाम जीमेल के लिए है इमेल फ्रॉम गूगल
सर्चबार की बायीं तरफ सर्च एंजिन का चिह्न है जिसे परिणाम दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया है
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स के लिए डीफॉल्ट सर्च एंजिन गूगल है
किन्तु हमें इससे बाध्य होने की आवश्यकता नहीं है
हम अपनी पसंद का सर्च एंजिन चुन सकते हैं
सर्चबार के अंदर ही गूगल के सर्च एंजिन चिह्न पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि याहू और बिंग सहित लोकप्रिय सर्च एन्जिनो के चिन्हों का एक ड्रॉपडाउन बॉक्स दिखाई पड़ता है
ड्रॉपडाउन बॉक्स में से याहू चुनिए
हम देख सकते हैं कि सर्चबार की बायीं तरफ का चिह्न याहू के चिह्न में बदल गया है
अब चलिए सर्चबार में फिर इमेल टाइप करते हैं और आवर्धक लेंस पर क्लिक करें
इस बार हम देख सकते हैं कि कंटेंट्स क्षेत्र में परिणाम याहू सर्च एंजिन की तरफ से हैं
ध्यान दीजिये की परिणाम पिछली बार से थोड़े अलग हैं
सबसे उपर का परिणाम अब जीमेल नहीं है
इसकी जगह पर सबसे उपर परिणाम याहू मेल है
पुनः सर्चबार के अंदर सर्च एंजिन चिह्न पर क्लिक करिये
ड्रॉपडाउन बॉक्स में मैनेज सर्च इंजाइन्स चुनिए
यह मैनेज सर्च इंजीन लिस्ट नामक एक डायलॉग बॉक्स खोलता है
सूची के आखरी विषय पर क्लिक करिये
दायीं और के बटन्स अब सक्रिय हो गयें है
रिमूव बटन पर क्लिक करिये हम देख सकते हैं कि जो विषय हमने चुना वह अब सूची में नहीं है
डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए ओक पर क्लिक करिये
सर्चबार के अंदर सर्च एंजिन पर क्लिक करिये
मैनेज सर्च इंजाइन्स पर क्लिक करिये
मैनेज सर्च इंजाइन्स लिस्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है
डायलॉग के सबसे नीचे एक लिंक है जो है गेट मोरे सर्च इंजाइन्स इस पर क्लिक करिये
एक नई ब्राउज़र टैब खुलती है
यह कई सारे सर्च एंजिन दर्शाता है जिसे हम सर्चबार में जोड़ सकते हैं
आप अपनी आवश्यकतानुसार कोई सा भी सर्च एंजिन जोड़ सकते हैं
चलिए टैब के कोने में एक्स पर क्लिक करके इस टैब को बंद करते हैं
हम फाइंड बार की मदद से कंटेंट्स क्षेत्र में किसी विशिष्ट टेक्स्ट की खोज कर सकते हैं
उर्ल बार में लिखिए wwwgmailcom और Enter दबाइए
जब जीमेल होमपेज लोड हो जाता है एडिट पर क्लिक करिये और फिर फाइंड पर
ब्राउज़र विंडो पर नीचे एक फाइंड बार दिखता है
फाइंड बार के टेक्स्ट बॉक्स में जीमेल टाइप करें
जैसे ही हम टाइप करते हैं हम देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट का पहला उदाहरण कंटेंट्स क्षेत्र में चिह्नांकित हुआ है
नेक्स्ट पर क्लिक करने से शब्द के अगले उदाहरण पर ध्यान केंद्रित होगा
प्रीवियस पर क्लिक करने से शब्द के पिछले उदाहरण पर ध्यान चला जाएगा
हाइलाइट अल्ल ऑप्शन पर क्लिक करिये
हम देख सकते हैं कि सर्च किए टेक्स्ट के सारे उदाहरण कंटेंट्स क्षेत्र में चिह्नांकित हो गये हैं
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स अपने ऑटो कम्प्लीट विशेषता के द्वारा उर्ल बार में वेब एड्रेसेस को लिखना सरल बना देता है
हमें एड्रेस बार में पूरा वेब एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है
इसको कोशिश करें एड्रेस बार में लिखिए जीएमए
हम देख सकते हैं कि जिस शब्द को हम लिख रहें हैं उसको मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स स्वचालित रूप से पूरा करने की कोशिश कर रहा है
यह जीएमए से शुरू होने वाली वेबसाइट्स की एक ड्रॉपडाउन सूची खोलता है
ड्रॉपडाउन सूची से जीमेल लिंक को चुनिए
कंटेंट्स क्षेत्र में जीमेल वेबपेज लोड होता है
यदि हमें यह विशेषता पसंद नहीं आती है हम इसे बंद कर सकते हैं
एडिट पर क्लिक करें और फिर प्रेफरेंस पर
विंडोज़ उपयोगकर्ता टूल्स पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप्शंस पर
मुख्य मेनू टैब्स की सूची में से प्राइवेसी टैब चुनिए
डायलॉग बॉक्स के बिलकुल नीचे व्हेन यूजिंग लोकेशन बार suggestनामक एक ऑप्शन है
इसको विस्तार में देखने के लिए ड्रॉपडाउन सूची के एरो पर क्लिक करिये
सूची में से नोथिंग चुनिए
डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक करिये
चलिए वापस एड्रेस बार पर चलते हैं और टाइप करें जीएमए
ध्यान दीजिये कि कोई भी सुझाव नहीं आए
इसी के साथ हम मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स के सर्च और ऑटो कम्प्लीट विशेषताओं के ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कैसे खोज करें सर्च एंजिन को नियंत्रित करें फाइंड बार का इस्तेमाल करना ऑटो कम्प्लीट और अड्रेस बार का इस्तेमाल करना
इस व्यापक नियत कार्य की कोशिश करें
सर्चबार में सर्च एंजिन को याहू में बदलिए
स्पोकेन ट्यूटोरियल के लिए खोजें
पहले परिणाम पर क्लिक करें
देखिये कि पेज पर कितनी बार शब्द वीडियो दिख रहा है
अब वेबपेज पर सारे वीडियो शब्द को चिह्नांकित करने के लिए हाइलाइट अल्ल पर क्लिक करिये
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी के माध्यम से समर्थित किया है
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट रवि कुमार द्वारा अनुवादित है तथा आईआई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद